इस फोटो में लाइट नजर आ--

इस फोटो में पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में डेकोरेशन नजर आ रहा है इस फोटो में रिसेप्शन नजर आ रा--

इस फोटो में खन्ना बंजारी नजर आ रहा है इस फोटो में स्कूल नजर आ रहा है।